बड़ी सी दुकान दिखाई दे रही है जिसमे बहुत सारे इक्कट्ठे रखे हुए है जिसमे कुछ चावल कुछ दाल दिखाई दे रही है यहां पर काफी सारा सामान टंगा हुआ दिखाई दे रहा है।

व्हाइट कलर की इमारत दिखाई दे रही है जिसमे कुछ दिखाई दे रहीं है | यहाँ पर कुछ ग्रिल लगी हुई दिखाई दे रहीं है | यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं | यहाँ से आसमान का रंग काफी सुन्दर लग रहा है | इसी ईमारत में काफी सारे बड़े बड़े वाइट कलर के पिलर दिखाई दे रहे हैं जो की काफी सुन्दर लग रहा है |

यह एक रूम का पिक्चर है जहां पर बोहोत सारे ए ड्रॉर बने हुए दिखाई दे रहे हैं| एक जगह दिखाई दे रही है जिनमें बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं| यहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ है छत में एक पंखा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

ये एक जगह है जहां पर एक आईसक्रीम की शोप नजर आ रही है| यहां पर काफी सारे आदमी नजर आ रहे हैं यहां पे काफी सारी बाइक और स्कूटी भी खड़ी है| यहां एक ऑटो भी खड़ा हुआ है यहां एक पेड़ भी लगा हुआ है और यहां पर एक फ्रूट की शोप भी है।